क्रीम कलर का ब्राउन कलर का पेंट है इसपे एक दिये का --

लोगो लगा हुआ है कांच की बिल्डिंग नजर आ रही है।

एक चिड़िया नजर आ रही है बाहर गमले रखे हुए हैं।

सेवेन ओइल हेवन केयर बजाज आमंड हेड अंड सौल्डर डव --

यह एक पार्क हैं जहां पाँच स्टैचू लगे हुए हैं।

ए_सी लगा हुआ है पी_ओ_पी लाइटिंग करी हुई किसी के विज्ञान स्विच बोर्ड एक ब्लैक कलार की चेयर --

अलग अलग तरह के दुपटे लगे हुए है।

यहां एक लड़का नजर आ रहा है जो कोट पर प्रेस कर रहा है।

बहोत सारे पेड़ है तार नजर आ रहे है।

यह एक मंदिर नजर आ रहा है जो बहोत सारे कलारो से पेंट है।

हरा नीला गुलाबी पर्पल ऑरेंज व्हाइट ब्लेक रेड --

और भी बहोत सारे तरह के कलरो के पेंट है।

यहा एक घर है उस घर के निचे टायर की दूकान है।

बहोत सारी गाडियों के टायर रखे हुए हो अप्पोलो टायर्स --

एक व्हाईट कलर का डस्टबिन रखा हुआ है जलियों के बाउंड्री बनी हुई है।

यह एक डैम का फोटो है यहां हसबैंड वाइफ फोटो क्लिक करवा रहे हैं।

जो मत्तार टायर सेंटर --

जब मोच में है यहा ट्रक के बड़े बड़े टायर रखे हुए है।

ऑरेंज व्हाइट ग्रीन कलर का खंभा पेंट है बहुत हरी भरी घासे हैं।

बहोत सारी देविया बहोत सारे भगवानो का स्टेचू लगा हुआ है।

कुछ माल भर के जा रहे है कुछ खाली होकर आ रहे है।

विथ डील्स अ ऑल कैंड्स ऑफ एयर कंडीशनिंग

मालाएं टंगी हुई हैं यहां एक बस रुकी हुई है।

यह एक मेकेनिक टू व्हीलर की दुकान है।

यह एक अंडश लेन बैंक टूवेंटी फॉर हाउस ए_टी_एम है।

एक आदमी खड़ा हुआ है एक औरत खड़ी हुई है।